एक चौकी पर बहोत चूड़ी रखा गया है बहुत सारा रंग का यहाँ चूड़ी बेच रहा है।

लेडीज यहाँ दवाई लेने के लिए आया है।